गेटवेरिएबल पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
गेट वेरिएबल वेरिएबल का बहुत ही उपयोगी प्रकार है
इसका उपयोग आकारों के साथ अधिकतर सक्रिय वेबसाइट के लिए होता है
जिसमें की क्लिक सक्षम बटन्स हैं
यह यूजर को भी दिखाई देता है
आप अपने पेज पर इस की तरह कुछ भी देख सकते हैं
चलिए इस पर क्लिक करते हैं
आप इसी तरह से कुछ देख सकते हैं जैसे प्रश्न चिन्ह
उदाहरणस्वरूप मानिए कि नामे इक्वल्स टो एलेक्स
कुछ समान आपके ऐड्रेस बार में दिखाई दे सकता है
आपने एंड होगा कुछ और भी
उदाहरणस्वरूप यूर नामे इक्वल्स टो Kyle
यह गेट वेरिएबल है
वास्तव में यह क्या करता है यह एक एचटीएमएल फॉर्म से जमा डाटा लेता है
इसे स्टोरेज में रखता है जिसका उपयोग हमें करना होता है और यह केवल आपके ऐड्रेस बार में है
गेट वेरिएबल की सीमाएँ होती हैं
यह केवल 100 अक्षरों तक हो सकता है
यह यूजर को दिखाई पड़ता है
अतः यह पासवर्ड के लिए उपयोग करने के लिए ठीक नहीं है
अबइसका उपयोग करने के लिए आपको पह्प में अन्य वेरिएबल्स की तरह इसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं है
मैं कहने जा रहा हूँ एको फिर डॉलर चिन्हएक अंडरस्कोर अधोरेखा और गेट
और वर्ग कोष्ठकों में आपको वेरिएबल का नाम लिखने की जरूरत है उदाहरणस्वरूप माय नामे
यह सब मूलतः एको करने की जरूरत है अर्थात फॉर्म में क्या प्रविष्ट किया गया
यद्यपि मेरे पास फॉर्म नहीं है मैं अभी भी इसकी नकल कर सकता हूँ
मैं क्या करता हूँ मैं आ रखता हूँ और मैं कहता हूँ माय नामे इस इक्वल्स टो एलेक्स
फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और डाटा दिखाई देता है
उसी तरह से मैं काइल लिख सकता हूँ या कोई अन्य नाम या वेरिएबल जो मुझे चाहिए
अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि गेट पद्धति का उपयोग करके फॉर्म कैसे जमा करते हैं
मूलतः मैं एक एचटीएमएल पेज बनाने जा रहा हूँ
मैं एक फॉर्म रखता हूँ और फॉर्म का कार्य भी
यदि आपने पहले से एचटीएमएल नहीं सीखा हुआ है तो इसके साथ काम करने से पहले इसे सीखना बहुत उपयोगी होगा
कार्य उसी गति में होने जा रहा है जिसके साथ हम कार्य कर रहे हैं
यह पद्धति गेट के समान होने जा रही है क्योंकि यह वह पद्धति है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं
हमें एक इनपुट बॉक्स की आवश्यकता है और इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है
मैं इसे माय नामे कहने जा रहा हूँ यह वह वेरिएबल है जो कि दिखाई देने वाली है
हमें बजर जमा करने की भी आवश्यकता है
इनपुट में submitटाइप करेंclick हेरे जैसे कुछ आसान वेल्यू रखें
इसे रिफ्रेश करें
यह जैसा है वैसे ही छोड़ दें
मैं एलेक्स नाम टाइप करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ
आप देख सकते हैं यह यहाँ बदल गया है
यह मेरा नाम दे रहा है जो कि यहाँ इस बॉक्स का नाम है
और यह वह वेल्यू भी दे रहा है जिसे मैंने यहाँ टाइप किया है
तो अब मैं पह्प में जो करना चाहता हूँ वह है इस वेल्यू को एको करना
मैं इस एचटीएमएल के नीचे उद्धरण करना शुरू करुँगा
पह्प और एचटीएमएल एक ही पेज पर समाविष्ट करना संभव है
जब तक यह पह्प टैग्स के मध्य नहीं है
जब तक यह एक एको फंक्शन में है
अब मानिए कि नाम डॉलर चिन्ह अधोरेखा गेट के समान है
और माय नामे में मुझे यह ध्यान रखना होगा कि यह इससे मैच होगा
अन्यथा आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी
फिर केवल एको कहें और यूर या केवल हेलो और फिर name
चलिए इसे हटा देते है और फिर से शुरू करें
हमें पहले से ही हेलो मिला है
और एक इफ का उपयोग करके मैं ऐलेक्स टाइप करुँगा क्योंकि मैंने उसपर क्लिक किया है
इस प्रकार से ऐलेक्स प्रतीत होता है
लेकिन अभी हमें एक समस्या है
हमें हेलो मिला और फिर यहाँ खाली जगह पूर्णविराम के साथ
हम उससे मुक्त होना चाहते हैं
आप केवल इफ नामे कहना क्योंकि हमें पहले ही एक लाइन मिल गई है
हमें कर्ली कोष्ठकों की आवश्यकता नहीं है और नाम खुद मौजूद है अतः यह सही है
यदि नाम में कोई भी वेल्यू नहीं भेजी गई हो तो यह स्वतः से फलसे समझ लेगा
इसलिए यह इसको निष्पादित नहीं करेगा
रिफ्रेश करें
यह चला गया है
हमारे पास हमारी वेल्यू है और मैंने वहाँ क्लिक किया
इसने पता लगाया है कि एक वेल्यू यहाँ मौजूद है और यह एको हुआ है
तो यह गेट वेरिएबल की समाप्ति है
अगले ट्यूटोरियल में पोस्ट पोस्ट वेरिएबल और उसके उपयोग के बारे में सीखेंगे
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है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
धन्यवाद